एक ए टी एम है ए टी एम के अंदर बहुत सारे लोग है और ए टी एम का शटर --

एक बहोत बड़ी सी दुकान है दुकान के ऊपर बोर्ड है बोर्ड पर लिखा हुआ है एन आईड --

हाउस ऐसा लिखा हुआ है स्कूटियां लगी हुई है भार और एक औ--

बुलेट लगी हुई है भार कांच का दरवाज़े है।

और कुछ रंगीन लाल हरे पीले सफेद--

ऑटोस मारूटी मारुति सुजू--

एक गार्डन टाइप है भार --

एक और रा-ल-ल लाल कलर की स्कूटी टू व्हीलर है जो दुकान के बाहर रखी हुई है बाहर फैन है।

पोस्टर है पोस्टर पे वी_एस_यू_एस लिखा हुआ है और पीछे कार है व्हाइट कलर के कुछ दुकान आये हुए है रस्ते पे --

बड़ा सा होटल टाइप है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है रामानी--

और अंदर घुसने के लिए हॉल है।

कुछ कार हैं कुछ टू व्हीलर स्कूटियां बाहर रुकी हुई हैं ।

और फैन है लाइट ऑन है और एक फोटो फ्रेम है जो लगाई हुई है उस पे कुछ लिखा हुआ है ।

ऊ-स्कूटी टूवहीलर से इटकारा का कट--

बसा है बहुत सारे लग्जरिया जो लाइन से लगे हुए कलरफुल है वाइट लाल--

एक बैंक है बैंक के ऊपर नाम लिखा हुआ है एच_डी_एफ_सी बैंक ।

और कुछ खोके जो पैक करे हुए हैं और टेबल एक काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है कुर्चिया हैं।

रास्ता है बोर्ड पे लिखा हुआ है म मोरी--

अंदर एक टू व्हीलर पे कोई जा रहा है आदमी और आजुबाजू में.

गोपतापुर गोप्तापूर ऐसा लिखा हुआ है शेर चीता चिल--

और कुछ देवी के ऐसे फोटो है.

धोने के लिए लाई हुई है वो ऊपर खड़ी करी हुई है जिससे और एक आदमी पानी मार रहा है.

एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर.

झंडे झंडे दो तिरंगा के शो पीस --

झाड़ है और कुछ फोटो फ्रेम से जो चिपकाई हुई दीवार पे सोफा सेट है वाइट .

और ऊपर लिखा हुआ है एम टी .

कुर्सियां है और उनके हाथ में बुक्सेस है बैग है एक और लड़की के हाथ में उम--

फल्ली पल्ली के ऊपर भी कुछ बुक्स से पढ़े हुए हैं एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ है.

उसके ऊपर बैठने का वाइट कलर का है जिसको झांका हुआ है.

उस तरह से बहुत सारे आदमी लोगों के जिसके फोटो से ऐसे चिपकाए हुए हैं बहुत सारे.

गुड ईयर्स ऐसा है बाहर एक बड़ी सी जीब है टायर्स एक के ऊपर एक के ऊपर रखे हुए हैं कुछ आदमी अंदर है दुकान के कुछ आदमी बाहर है.

और ऊपर लाइटिंग है दरवाजे है.

और ऊपर एक कुछ तो लिखा हुआ है ऐसा लकड़ी पर.

एक स्कूल टाइप कुछ बिल्डिं ग है जिसकी खिड़कियां नीचे भी उसके ऊपर भी ऐसी खिड़कियां है वो सारे और उसके.

और झाड़ी शोपीस के सेंटा क्लॉज के--

जो ऐसे लाइन से लगे हुए नीचे झिन्डू है।

नीचे भी फुगे लगाए हुए ऊपर भी फुगे लगाए हुए है।

और पीछे एक औरतें दो आदमी है सामने जो आदमी उसने एयरफोन गले में गूताया हुआ है टीका लगाया हुआ है।

एक आदमी खड़ा हुआ है और पीछे पोस्टर .

एक कार है जो ऊपर करी हुई ऊपर ऐसा रखा हुआ है गैस टाकी है.

और खिड़कियां अ सारी खुली हैं उपर पत्रा है।

और छोटे मच्छिया झींगे सब है बड़े मच्छिया एक स्टूल है उसपे एक आदमी बैठा हुआ है और --

नीचे भी मच्छियां रखे हुए हैं ऊपर भी मच्छियां रखे हुए हैं।

बहुत सारे हेडफोन से कैमरे जो नवे नवे रखे हुए है।